यह शानदार होटल है और इस होटल में टी.वी. लगी हुई है और बहुत सारे ए.सी. भी दिख रहे है हमें और यहाँ पे बैठने के लिए बहुत सारे जगह भी हैं और यह पक्के का है बहुत अच्छा --

ये गवर्नमेंट स्कूल है जिसके बाहर बहुत सारे पोस्टर लगे हुए है ये पोस्टर है अ भगत सिंह है लक्ष्मी झा-झांसी लक्ष्मी बाई।